ऐथर पैथर फणा हमि टेबल टुबलन दिखेण लग्यां कुर्सी दिखेण लग्यां अर एक खिड़की दिखेण लगीं जै पर पर्दा पुर्दा लटकायां।